ये एक बड़े से नीले-नीले समुद्र का पिक्चर है।

यहाँ पर एक कार खड़ी हुई है उसका बोनट खुला हुआ है और एक आदमी के हाथ में अ पेट्रोल पंपो वाला पाइप है।

ये एक म बड़ा सा पांडाल सजा हुआ है स्टेज उसपे ह कई औरतें खड़ी हुई हैं अ --

ये एक बुक सेंटर है जहाँ पर अ काउंटर पर ढेर सारी किताबें लगी हुई हैं और ऊपर की तरफ लड़ियों में पेन टंगे हुए हैं।

यहां पर बाइक कार और ऑटो रिक्शा रिक्शा खड़े हुए है और साइड की तरफ दुकाने बनी हुई है।